यहाँ आकर के रुक भी सकता है।

पता नहीं सब लिखा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है परिवार का एक क्लास के सामने का समय --

सैलून में भाई साहब फेस वाश करवा रहे --

पानी का होता हैं जो लिकुविड विकुविड होता हैं गाल में लगाने वाला सब कुछ --

और बहुत सारे लोग नीचे में लेडीज जेंट्स सब खड़े हैं।

टैक्स जब ही होता है बनाने वाला के काटने --

रिपेयरिंग चल रही हैं उपर का आगे का जो ढकन होता है --

घूमे घुमने के लिए आए हुए हैं बैलून का नाव ये सब फेक है ।

यहाँ पर दुकाने हैं जिसमें जो हैं गाहक बैठे हुए हैं।

में एक मंदिर दिया गया है बुद्ध भगवन का मंदिर है जिसके ऊपर में भगवन का है मूर्ती है।

ए.टी.एम. चालू है मतलब पिक में तो दिखा रहा था बंद है लेकिन इसमे ए.टी.एम. चालू कर दिया गया है। दिन का समय है।